एक बहुत बड़ा सा साफ-सुथरा पेट्रोल पंप है दो पेट्रोल भरने के दिए गए हैं और यह इंडियन ऑयल लिखा है।

एक चीज़ की परचूने की दूकान दी गयी है चांदनी जनरल स्टोर लिखा है कोको कोला का पोस्टर लिखा गया है खूब सारी चीज़ की दूकान है।

एक बड़ा सा रेस्टोरेंट है लकड़ी की चेयर दी हुई है टेबल हैं पर्पल और व्हाइट कलर का उस पे डेकोरेट है टिशू पेपर रखा हुआ है।

सामने बहुत बड़ी सी होटल दिख रही है दो या तीन माला की है।

इतना साफ पेट्रोल पंप का रा रोड दिया है और पेट्रोल पंप का डिज़ाइन लाल नीला सफेद है।

ये इंडियन ऑइल लिखा हुआ है| ये सामने एक बहुत बड़ा सा ट्रक खड़ा है। पेट्रोल डला रहा है|

डी मैरी इंटरनेशनल स्कूल लिखा गया है नीले कलर के ऊपर सफ़ेद कलर का आस-पास खूब छोटे-छोटे पेड़ दिए गए हैं दो अंकल खड़े हुए हैं।

घास उग रही है बारीक बारीक और बहोत सारे पेड़ है।।

नारायण एच पी लिखा हुआ है और एक उलटी तरफ शायद से गाड़ी भी खड़ी है।